पौधे एवं फूल और बहुत चीज़ हैं जो कि सजावट के काम आती हैं ।

यहाँ पर बकरियों को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है और उनसे दूध निकाल कर बेचा जाता है इसको अपन किसानी भी कह सकते हैं।

यह कोई बहुत पुराना बंगला है यहाँ पर लोग आते हैं यह कोई मंदिर है।

हैं जो दिख रहें हैं जे एक पेड़ हैं। यहाँ पर बहुत प्रकार के पेड़ हैं। यह किसी जंगल की तस्वीर है। यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया भी बनी हुई है।

जो की यह दुकान भागलपुर में है यहाँ पर पौधे भी मिलते है हरे-भरे ग्रीन्सम --

और ये एक मान लो बकरियों का घर है यहाँ पर बकरियों का दूध निकाला जाता है और किसानी की जाती है और बेचा जाता है।

यह एक जयप्रकाश उधान भागलपुर का दुआर है यह दुआर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है।

यह एक बहुत बड़ी ओन जिम है यहाँ पर एक बहुत बड़ी व्यायाम शाला है।